सामने में जाने-आने के लिए रास्‍ता है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पीछे एक मस्जिद बना हुआ है जिसमें माइक लगी हुई है।

सामने में जो ड्रम रखा हुआ है उसके ऊपर हाथ देकर मिस्त्री खड़े हैं जैसे --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पाइप है जिसका रंग हरे रंग का है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बांस की सीढ़ी लगी हुई है।

जैसे कि में देख पा रही हूँ यह एक सुबहे का समय है जैसे कि में देख पा रही हूँ --

पा रही हूँ यहाँ पर फ्रिज रखे हुए हैं रंग बिरंग के जैसे की में --

जैसे की मैं देख पा रही हूं यहां पर बहोत सारे लाइट जल रहे हैं जैसे की मैं देख पा रही हूं।

इस रूम में बहोत सारे लाइट लगी हुई हैं जैसे की मैं देख पा रही यहां पर जो खिड़की और दरवाजे हैं ये कांच के बने हैं।

उधर तीन लोग बैठे हुए है जो इन सब लोगों को देख रहे है जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक लोग ने हाथ में--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

खेतों में छोटे-छोटे हरे भरे घास है और कुछ घास के रंग लाल और कथक रंग का है।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

रैक है जैसा कि मैं देख पा रही हूं की रैक में बहोत सारी कॉपी किताब है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे जो घर बना हुआ है जिसका रंग सफेद रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं घर के बाहर --

बैलून से सजावट की गई है और बैलून का रंग है नीला और सफेद जैसे --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे जो दरवाजे बने हुए जिसका रंग कथा रंग का और वह कांच के बने हैं।

पेंट लाल और नीला रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर जो खिड़की है वो लोहे के हैं।

जो कराठा का ड्रेस पहने हुआ हैं और वो कराठा कर रहा है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में टीचरस खड़े है ज --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे अ हंडी रखे हुए हैं और हंडी में बहुत सारे खाना है जैसे कि --